ये एक ब्लैक कलर का स्कॉडा है।

ये एक मार्किट है मछ्ली मार्किट है जिसमे बहुत सारी मछली सामने रखी हुई है एक औरत--

रेड कलर का कुर्सी है उसके पीछे ब्लू कलर का कुर्सी है सामने एक कुर्सी है बना हुआ है।

अ लेफ्ट साइड में फोर्ड इ स्टोअर कार केयर लिखा हुआ है इस--

उपर की और कोक कोला दिख रहा है पोस्टर है।

टराउसर ब्लैक एंड वाइट टराउसर पहना हुआ है शूज पहना हुआ है ब्लैक कलर का हाफ टीशर्ट पहना हुआ है एक लड़का जा रहा है।

एक सामने का टीवी रखा हुआ है कंप्यूटर रखा हुआ है कुर्सी रखा हुआ है डेस्क्बोर्ड रखा हुआ है।